जहां पे एक कुर्सी दिखाई दे रही है जो काले रंग की है।

जिन पे बहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं बच्चों के हाथों में कॉपी और कलम है।

जिसके पड़ोस में एक और भी दुकान है यहां पे सेटल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जो सफेद रंग से पोते हुए हैं।

यहां पे पेड़ पौधे भी हैं काले रंग का एक चैनल लगा हुआ है।

यहां पे एक बहुत दूर आदमी बैठा हुआ है पेड़ के नीचे।

यहां एक बहुत बड़ा कमरा दिखाई दे रहा है जो पीले रंग से पोता हुआ है इसके अंदर कुछ गुलाबी और सफेद रंग के गुब्बारे लगे हुए हैं।

यहां पे कुछ गत्ते भी रखे दिखाई दे रहे हैं। यहां पे बहोत सारी सिनरियाँ भी रखी हुई हैं।

एक राज भवन दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत अच्छी हरियाली है।

जो बहोत ही बड़ा है इसमें बहोत सारी लाइटे लगी है।

यहां पे एक बेड़ पड़ी हुई है जिस पे एक आदमी लेटा हुआ है।

यहाँ पर कुछ पंजाबी लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक लड़की भी खड़ी है जो गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने हुए है।

जिसपे आदमी छपे हुए हैं। इस दुकान के बाहर बोहोत आदमी इधर उधर घूम रहे हैं।

यहां पर एक बहोत बड़ी सड़क है आसपास बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

यहां पर कुर्सियां भी पड़ी हुई हैं। मेज भी पड़ी हुई हैं जो काले रंग की हैं।